टेबल का ऊपर में खाने पीने के लिए सामान रखा हुआ है।

रेड कलर का पोस्टर लगाया हुआ है।

यहां मुझे येलो कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

एक लकड़ी से बनाया हुआ नाव है।

यहां मुझे गैस का चोल्हा टेबल में बहोत सारा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा टूटा फूटा लकड़ी लोग जमा करके रखा हुआ है।

लोहा का फेंसिंग भी लगाया हुआ है।

बीच में एक सुंदर सा क्रिसमस ट्री भी लगा के रखा हुआ है।

इस रूम का अंदर में दो वाइट कलर का फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है।

इस लोहा का ऊपर में सबसे ऊपर एक लड़का व्हाइट गंजी और पर्पल कलर का हाफ पेंट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

उम फ्लावर पोड्स भी तंगया हुए हैं।

यहां ब्लू कलर का टिना घर नजर आ रहा है।

इस ग्राउंड में बहुत सारा इंसान लोग फुटबॉल खेल रहा है।

दुकान का अंदर में ब्लू कलर शेल्फ्स में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

इस रूम के वॉल में बहुत सारा पेंटिंग कर के है।

ऊपर में ब्लैक कलर का बहुत सारा एडजेस्टेबल लाईट लोग लगा के रखा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ा पार्लर रूम का अंदर है।

उपर में एक सुंदर सा सैंडिलियर टंगाया हुआ है।

दो गाय हैं एक बरा और एक छोटा।

जगह जगह सामने में एक ग्रीन कलर का फ्लोर में लगाया हुआ है।

मे ऑफिस ऑफ द एक्सट्रा असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ है।

यहां मुझे लाइब्रेरी का अंदर दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहुत सारा लाइट्स ऑन नजर आ रहा है।

यहां रस्ता का सामने में एक बड़ा लड़की और छोटा बच्चा है।

सामने में एक बहुत बड़ा दुकान लाइन है।

ऊपर में ए_सी भी रखा हुआ है।